मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार आप रेडियो पर मेरी मन की बात सुनते होंगे लेकिन दिमाग इस बात पर लगा होगा बच्चों के एक्साम शुरू हो रहे हैं कुछ लोगों के दसवींबारहवीं के एक्साम शायद 1 मार्च को ही शुरू हो रहे हैं
तो आपके दिमाग में भी वही चलता होगा
मैं भी आपकी इस यात्रा में आपके साथ शरीक होना चाहता हूँ
आपको आपके बच्चों के एक्साम की जितनी चिंता है मुझे भी उतनी ही चिंता है
लेकिन अगर हम एक्साम को परीक्षा को देखने का अपना तौरतरीका बदल दें तो शायद हम चिंतामुक्त भी हो सकते हैं
मैंने पिछली मेरी मन की बात में कहा था कि आप NarendraModiApp पर अपने अनुभव अपने सुझाव मुझे अवश्य भेजिए
मुझे खुशी इस बात की है शिक्षकों ने बहुत ही सफल जिनकी करियर रही है ऐसे विद्यार्थियों ने माँबाप ने समाज के कुछ चिंतकों ने बहुत सारी बातें मुझे लिख कर के भेजी हैं
दो बातें तो मुझे छू गईं कि सब लिखने वालों ने विषय को बराबर पकड़ के रखा
दूसरी बात इतनी हजारों मात्रा में चीज़ें आई कि मैं मानता हूँ कि शायद ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है
लेकिन ज़्यादातर हमने एक्साम के विषय को स्कूल के परिसर तक या परिवार तक या विद्यार्थी तक सीमित कर दिया है
मेरी App पर जो सुझाव आये उससे तो लगता है कि ये तो बहुत ही बड़ा पूरे राष्ट्र में लगातार विद्यार्थियों के इन विषयों की चर्चायें होती रहनी चाहिए
मैं आज मेरी इस मन की बात में विशेष रूप से माँबाप के साथ परीक्षार्थियों के साथ और उनके शिक्षकों के साथ बातें करना चाहता हूँ
जो मैंने सुना है जो मैंने पढ़ा है जो मुझे बताया गया है उसमें से भी कुछ बातें बताऊंगा
कुछ मुझे जो लगता है वो भी जोड़ूंगा
लेकिन मुझे विश्वास है कि जिन विद्यार्थियों को एक्साम देनी है उनके लिए मेरे ये 2530 मिनट बहुत उपयोगी होंगे ऐसा मेरा मत है
मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रो मैं कुछ कहूँ उसके पहले आज की मन की बात का ओपनिंग हम विश्व के वेल्कनाउन ओपनर के साथ क्यूँ न करें
जीवन में सफलता की ऊँचाइयों को पाने में कौनसी चीज़ें उनको काम आईं उनके अनुभव आपको ज़रूर काम आएँगे
भारत के युवाओं को जिनके प्रति नाज़ है ऐसे भारतरत्न श्रीमान सचिन तेंदुलकर उन्होंने जो मेसेज भेजा है वह मैं आपको सुनाना चाहता हूँ
नमस्कार मैं सचिन तेंदुलकर बोल रहा हूँ
मुझे पता है कि एक्साम्स कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली हैं
आप में से कई लोग टेंसे भी रहेंगे
मेरा एक ही मेसेज है आपको कि आपसे एक्सपेक्टेशंस आपके मातापिता करेंगे आपके टीचर्स करेंगे आपके बाकी के फैमिली मेंबर्स करेंगे दोस्त करेंगे
जहाँ भी जाओगे सब पूछेंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है कितने परसेंट आपका स्कोर करोगे
यही कहना चाहूँगा मैं कि आप ख़ुद अपने लिए कुछ टार्गेट सेट कीजियेगा किसी और के एक्सपेक्टेशन के प्रेशर में मत आइयेगा
आप मेहनत ज़रूर कीजियेगा मगर एक रियलिस्टिक अचीवेबल टार्गेट खुद के लिए सेट कीजिये और वो टार्गेट अचीव करने के लिए कोशिश करना
मैं जब क्रिकेट खेलता था तो मेरे से भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते थे
पिछले 24 साल में कई सारे कठिन मोमेंट्स आये और कईकई बार अच्छे मोमेंट्स आये मगर लोगों के एक्सपेक्टेशंस हमेशा रहते थे और वो बढ़ते ही गये जैसे समय बीतता गया एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ते ही गए
तो इसके लिए मुझे एक सोल्यूशन फाइंड करना बहुत ज़रूरी था
तो मैंने यही सोचा कि मैं मेरे खुद के एक्सपेक्टेशंस रखूँगा और खुद के टार्गेट्स सेट करूँगा
अगर वो मेरे खुद के टार्गेट्स मैं सेट कर रहा हूँ और वो अचीव कर पा रहा हूँ तो मैं ज़रूर कुछनकुछ अच्छी चीज़ देश के लिए कर पा रहा हूँ
और वो ही टार्गेट्स मैं हमेशा अचीव करने की कोशिश करता था
मेरा फोकस रहता था बॉल पे और टार्गेट्स अपने आप स्लोलीस्लोवली अचीव होते गए
मैं आपको यही कहूँगा कि आप आपकी सोच पॉजिटिव होनी बहुत ज़रूरी है
पॉजिटिव सोच को पॉजिटिव रिजल्ट्स फोलो करेंगे
तो आप पॉजिटिव ज़रूर रहियेगा और ऊपर वाला आपको ज़रूर अच्छे रिजल्ट्स दे ये मुझे इसकी पूरी उम्मीद है और आपको मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगा एक्साम्स के लिए
ओन फ्री जा के पेपर लिखिये और अच्छे रिजल्ट्स पाइये
दोस्तो देखा तेंदुलकर जी क्या कह रहे हैं
ये एक्सपेक्टेशन के बोझ के नीचे मत दबिये
आप ही को तो आपका भविष्य बनाना है
आप खुद से अपने लक्ष्य को तय करें खुद ही अपने टार्गेट तय करें मुक्त मन से मुक्त सोच से मुक्त सामर्थ्य से
मुझे विश्वास है कि सचिन जी की ये बात आपको काम आएगी
और ये बात सही है
प्रतिस्पर्द्धा क्यों अनुस्पर्द्धा क्यों नहीं
हम दूसरों से स्पर्द्धा करने में अपना समय क्यों बर्बाद करें
हम खुद से ही स्पर्द्धा क्यों न करें
हम अपने ही पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का तय क्यों न करें
आप देखिये आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पायेगा और अपने ही पिछले रिकॉर्ड को जब तोड़ोगे तब आपको खुशी के लिए संतोष के लिए किसी और से अपेक्षा भी नहीं रहेगी
एक भीतर से संतोष प्रकट होगा
दोस्तो परीक्षा को अंकों का खेल मत मानिये
कहाँ पहुँचे कितना पहुँचे उस हिसाबकिताब में मत फँसे रहिये
जीवन को तो किसी महान उद्देश्य के साथ जोड़ना चाहिए
एक सपनों को ले कर के चलना चाहिए संकल्पबद्ध होना चाहिए
ये परीक्षाएँ वो तो हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे उसका हिसाबकिताब करती हैं हमारी गति ठीक है कि नहीं है उसका हिसाबकिताब करती हैं
और इसलिए विशाल विराट ये अगर सपने रहें तो परीक्षा अपने आप में एक आनंदोत्सव बन जायेगी
हर परीक्षा उस महान उद्देश्य की पूर्ति का एक कदम होगी
हर सफलता उस महान उद्देश्य को प्राप्त करने की चाभी बन जायेगी
और इसलिए इस वर्ष क्या होगा इस एक्साम में क्या होगा वहाँ तक सीमित मत रहिये
एक बहुत बड़े उद्देश्य को ले कर के चलिये और उसमें कभी अपेक्षा से कुछ कम भी रह जाएगा तो निराशा नहीं आएगी
और ज़ोर लगाने की और ताक़त लगाने की और कोशिश करने की हिम्मत आएगी
जिन हज़ारों लोगों ने मुझे मेरे App पर मोबाइल फ़ोन से छोटीछोटी बातें लिखी हैं
श्रेय गुप्ता ने इस बात पर बल दिया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है
स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के साथसाथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें जिससे आप एक्साम में स्वस्थतापूर्वक अच्छे से लिख सकें
अब मैं आज आखिरी दिन ये तो नहीं कहूँगा कि आप दंडबैठक लगाना शुरू कर दीजिये और तीन किलोमीटर पाँच किलोमीटर दौड़ने के लिए जाइये
लेकिन एक बात सही है कि खास कर के एक्साम के दिनों मे आप का राउटाइन कैसा है
वैसे भी 365 दिवस हमारा राउटाइन हमारे सपनों और संकल्पों के अनुकूल होना चाहिये
श्रीमान प्रभाकर रेड्डी जी की एक बात से मैं सहमत हूँ
उन्होंने ख़ास आग्रह किया हैं समय पर सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठकर रिविजन करना चाहिए
एक्जामिनेशन सेंटर पर प्रवेशपत्र और दूसरी चीजों के साथ समय से पहले पहुँच जाना चाहिए
ये बात प्रभाकर रेड्डी जी ने कही है मैं शायद कहने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि मैं सोने के संबंध में थोड़ा उदासीन हूँ और मेरे काफ़ी दोस्त भी मुझे शिकायत करते रहते हैं कि आप बहुत कम सोते हैं
ये मेरी एक कमी है मैं भी ठीक करने की कोशिश करूँगा
लेकिन मैं इससे सहमत ज़रूर हूँ
निर्धारित सोने का समय गहरी नींद ये उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि आपकी दिन भर की और गतिविधियाँ और ये संभव है
मैं भाग्यवान हूँ मेरी नींद कम है लेकिन बहुत गहरी ज़रूर है और इसके लिए मेरा काम चल भी जाता है
लेकिन आपसे तो मैं आग्रह करूँगा
वरना कुछ लोगों की आदत होती है सोने से पहले लम्बीलम्बी टेलीफ़ोन पर बात करते रहते हैं
अब उसके बाद वही विचार चलते रहते हैं तो कहाँ से नींद आएगी और जब मैं सोने की बात करता हूँ तो ये मत सोचिए कि मैं एक्साम के लिए सोने के लिए कहा रहा हूँ
गलतफ़हमी मत करना
मैं एक्साम के टाइम पर तो आपको अच्छी परीक्षा देने के लिए तनावमुक्त अवस्था के लिए सोने की बात कर रहा हूँ
सोते रहने की बात नहीं कर रहा हूँ
वरना कहीं ऐसा न हो कि मार्क्स कम आ जाये और माँ पूछे कि क्यों बेटे कम आये तो कह दो कि मोदी जी ने सोने को कहा था तो मैं तो सो गया था
ऐसा नहीं करोगे न मुझे विश्वास है नहीं करोगे
वैसे जीवन में डिसिप्लिन सफलताओं की आधारशिला को मजबूत बनाने का बहुत बड़ा कारण होती है
एक मजबूत फाउंडेशन डिसिप्लिन से आता है
और जो अनऑर्गनाइज्ड होते हैं इंडिसिप्लिन होते हैं सुबह करने वाला काम शाम को करते हैं दोपहर को करने वाला काम रात देर से करते हैं उनको ये तो लगता है कि काम हो गया लेकिन इतनी एनर्जी वास्ते होती है और हर पल तनाव रहता है
हमारे शरीर में भी एकआध अंग हमारे बॉडी का एकआध पार्ट थोड़ीसी तकलीफ़ करे तो आपने देखा होगा कि पूरा शरीर सहजता नहीं अनुभव करता है
इतना ही नहीं हमारा राउटाइन भी चरमरा जाता है
और इसलिए किसी चीज़ को हम छोटी न मानें
आप देखिये अपनेआपको कभी जो निर्धारित है उसमें कंप्रोमाइज करने की आदत में मत फंसाइए
तय करें करके देखें
दोस्तो कभीकभी मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट एक्साम के लिए जाते हैं दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं एक उसने क्या पढ़ा है क्या सीखा है किन बातों में उसकी अच्छी ताक़त है उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं
दूसरे प्रकार के स्टूडेंट होते हैं यार पता नहीं कौनसा सवाल आयेगा पता नहीं कैसा सवाल आयेगा पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा पेपर भारी होगा कि हल्का होगा ये दो प्रकार के लोग देखे होंगे आपने
जो कैसा पेपर आयेगा उसके टेंशन में रहता है उसका उसके परिणाम पर भी नकारात्मक प्रभाव होता है
जो मेरे पास क्या है उसी विश्वास से जाता है तो कुछ भी आ जाये वो निपट लेता है
इस बात को मुझसे भी अच्छी तरह अगर कोई कह सकता है तो चेकमेट करने में जिनकी मास्टरी है और दुनिया के अच्छोंअच्छों को जिसने चेकमेट कर दिया है ऐसे चेस के champ
ओन विश्वनाथन आनंद वो अपने अनुभव बतायेंगे
आइये इस एक्साम में आप चेकमेट करने का तरीका उन्हीं से सीख लीजिए
हेलो थिस इस विश्वनाथन आनंद
फर्स्ट ओएफ अल्ल लेट मे स्टार्ट ओएफएफ बाय विशिंग यू अल्ल थे बेस्ट फोर यूर एक्साम्स आई विल नेक्स्ट तल्क आ लिटल बिट अबाउट होव आई वेंट टो माय एक्साम्स एंड माय एक्सपीरियंस फोर थाट
आई फाउंड थाट एक्साम्स एआरई वेरी मुच लाइक प्रॉब्लम्स यू फेस लेटर इन लाइफ
यू नीड टो बीई वेल रेस्टेड गेट आ गुड nightएस स्लीप यू नीड टो बीई ओन आ फुल स्टोमच यू शोल्ड डेफिनाइटली नोट बीई हंग्री एंड थे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इस टो स्टे काल्म
इत इस वेरी वेरी सिमिलर टो आ गेम ओएफ चेस व्हेन यू प्ले यू donट नोव व्हिच पावन विल अपीयर जस्ट लाइक इन आ क्लास यू donट नोव व्हिच क्वेस्शन विल अपीयर इन एएन एक्साम सो आईएफ यू स्टे काल्म एंड यू एआरई वेल नूरिश्ड एंड हेव स्लेप्ट वेल थेन यू विल फाइंड थाट यूर ब्रेन रिकॉल्स थे राइट अंस्वेर एटी थे राइट मोमेंट
सो स्टे काल्म
इत इस वेरी इम्पोर्टेंट नोट टो पुट टू मुच प्रेशर ओन यूरसेल्फ donट कीप यूर एक्सपेक्टेशंस टू हिघ
जस्ट सी इत एएस आ चैलेंज डीओ आई रिमेंबर व्हाट आई वास टॉट ड्यूरिंग थे यियर कैन आई सोल्व ठेसे प्रॉब्लम्स एटी थे लास्ट मिन्यूट जस्ट गो ओवर थे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स एंड थे थिंग्स यू फील थे टॉपिक्स यू फील यू donट रिमेंबर वेरी वेल यू मय अलसो रिकॉल सोमे इंसिडेंट्स विथ थे टीचर ओर थे स्टूडेंट्स व्हाइल यू एआरई राइटिंग एएन एक्साम एंड थिस विल हेल्प यू रिकॉल आ लोट ओएफ सब्जेक्ट मैटर
आईएफ यू रिवाइज थे क्वेशंस यू फाइंड डिफिकल्ट यू विल फाइंड थाट थे एआरई फ्रेश इन यूर हेड एंड व्हेन यू एआरई राइटिंग थे एक्साम यू विल बीई एबल टो डील विथ थेम मुच बेटर
सो स्टे काल्म गेट आ गुड nightएस स्लीप donट बीई ओवरकॉन्फिडेंट बट donट बीई पेसिमिस्टिक आइथर
आई हेव अल्वेज फाउंड थाट ठेसे एक्साम्स गो मुच बेटर थान यू फियर बेफोर
सो स्टे कॉन्फिडेंट एंड अल्ल थे वेरी बेस्ट टो यू
विश्वनाथन आनंद ने सचमुच में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है और आपने भी जब उनको अन्तर्राष्ट्रीय चेस के गेम में देखा होगा कितनी स्वस्थता से वो बैठे होते हैं और कितने ध्यानस्थ होते हैं
आपने देखा होगा उनकी आँखें भी इधरउधर नहीं जाती हैं
कभी हम सुनते थे न अर्जुन के जीवन की घटना कि पक्षी की आँख पर कैसे उनकी नज़र रहती थी
बिलकुल वैसे ही विश्वनाथन को जब खेलते हुए देखते हैं तो बिलकुल उनकी आँखें एकदम से बड़ी टार्गेट पर फिक्स रहती हैं और वो भीतर की शांति की अभिव्यक्ति होती है
ये बात सही है कि कोई कह दे इसलिये फिर भीतर की शांति आ ही जायेगी ये तो कहना कठिन है
लेकिन कोशिश करनी चाहिये हँसतेहँसते क्यों न करें आप देखिये आप हँसते रहेंगे खिलखिलाहट हँसते रहेंगे एक्साम के दिन भी अपनेआप शांति आना शुरू हो जाएगी
आप दोस्तों से बात नहीं कर रहे हैं या अकेले चल रहे हैं मुरझाएमुरझाए चल रहे हैं ढेर सारी किताबों को लास्ट मोमेंट भी हिला रहे हैं तोतो फिर वो शांत मन हो नहीं सकता है
हँसिए बहुत हँसते चलिए साथियों के साथ चुटकले शेयर करते चलिए आप देखिए अपनेआप शांति का माहौल खड़ा हो जाएगा
मैं आपको एक बात छोटी सी समझाना चाहता हूँ
आप कल्पना कीजिये कि एक तालाब के किनारे पर आप खड़े हैं और नीचे बहुत बढ़िया चीज़ें दिखती हैं
लेकिन अचानक कोई पत्थर मार दे पानी में और पानी हिलना शुरू हो जाए तो नीचे जो बढ़िया दिखता था वो दिखता है क्या अगर पानी शांत है तो चीज़ें कितनी ही गहरी क्यों न हों दिखाई देती हैं
लेकिन पानी अगर अशांत है तो नीचे कुछ नहीं दिखता है
आपके भीतर बहुतकुछ पड़ा हुआ है
साल भर की मेहनत का भण्डार भरा पड़ा है
लेकिन अशांत मन होगा तो वो खज़ाना आप ही नहीं खोज पाओगे
अगर शांत मन रहा तो वो आपका खज़ाना बिलकुल उभर करके आपके सामने आएगा और आपकी एक्साम एकदम सरल हो जायेगी
मैं एक बात बताऊं मेरी अपनी मैं कभीकभी कोई लेक्चर सुनने जाता हूँ या मुझे सरकार में भी कुछ विषय ऐसे होते हैं जो मैं नहीं जानता हूँ और मुझे काफी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है
तो कभीकभी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके समझने की कोशिश करता हूँ तो एक भीतर तनाव महसूस करता हूँ
फिर मुझे लगता है नहींनहीं थोड़ा रिलैक्स कर जाऊँगा तो मुझे अच्छा रहेगा
तो मैंने अपनेआप अपनी तकनीक डेवलप की है
बहुत दीप ब्रीथिंग कर लेता हूँ
गहरी साँस लेता हूँ
तीन बारपांच बार गहरी साँस लेता हूँ समय तो 30 सेकिंड 40 सेकिंड 50 सेकिंड जाता है लेकिन फिर मेरा मन एकदम से शांत हो करके चीज़ों को समझने के लिए तैयार हो जाता है
हो सकता है ये मेरा अनुभव हो आपको भी काम आ सकता है
रजत अग्रवाल ने एक अच्छी बात बतायी है
वो मेरी App पर लिखते हैं हम हर दिन कमसेकम आधा घंटे दोस्तों के साथ परिवारजनों के साथ रिलैक्स फील करें
गप्पें मारें
ये बड़ी महत्वपूर्ण बात रजत जी ने बताई है क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि हम जब एक्साम दे करके आते हैं तो गिनने के लिए बैठ जाते हैं कितने सही किया कितना गलत किया
अगर घर में माँबाप भी पढ़े लिखे हों और उसमें भी अगर माँबाप भी टीचर हों तोतो फिर पूरा पेपर फिर से लिखवाते हैं बताओ तुमने क्या लिखा क्या हुआ सारा जोड़ लगाते हैं देखो तुम्हें 40 आएगा कि 80 आएगा 90 आएगा आपका दिमाग जो एक्साम हो गयी उसमें खपा रहता है
आप भी क्या करते हैं दोस्तों से फ़ोन पर शेयर करते हैं अरे यार उसमें तुमने क्या लिखा अरे यार उसमें तुम्हारा कैसा गया अच्छा तुम्हें क्या लगा
यार मेरी तो गड़बड़ हो गयी
यार मैंने तो गलती कर दी
अरे यार मुझे ये तो मालूम था लेकिन मुझे याद नहीं आया
हम उसी में फँस जाते हैं
दोस्तो ये मत कीजिये
एक्साम के समय हो गया सो हो गया
परिवार के साथ और विषयों पर गप्पें मारिए
पुरानी हँसीखुशी की यादें ताज़ा कीजिए
कभी माँबाप के साथ कहीं गये हों तो वहाँ के दृश्यों को याद करिए
बिलकुल उनसे निकल करके ही आधा घंटा बिताइए
रजत जी की बात सचमुच में समझने जैसी है
दोस्तो मैं क्या आपको शांति की बात बताऊँ
आज आपको एक्साम देने से पहले एक ऐसे व्यक्ति ने आपके लिए सन्देश भेजा है वे मूलतः शिक्षक हैं और आज एक प्रकार से संस्कार शिक्षक बने हुए हैं
रामचरितमानस वर्तमान सन्दर्भ में उसकी व्याख्या करतेकरते वो देश और दुनिया में इस संस्कार सरिता को पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं
ऐसे पूज्य मुरारी बापू ने भी विद्यार्थियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण टिप भेजी है और वे तो शिक्षक भी हैं चिन्तक भी हैं और इसलिए उनकी बातों में दोनों का मेल है
मैं मुरारी बापू बोल रहा हूँ
मैं विद्यार्थी भाइयोंबहनों को यही कहना चाहता हूँ कि परीक्षा के समय में मन पर कोई भी बोझ रखे बिना और बुद्धि का एक स्पष्ट निर्णय करके और चित को एकाग्र करके आप परीक्षा में बैठिये और जो स्थिति आई है उसको स्वीकार कर लीजिए
मेरा अनुभव है कि परिस्थिति को स्वीकार करने से बहुत हम प्रसन्न रह सकते हैं और खुश रह सकते हैं
आपकी परीक्षा में आप निर्भार और प्रसन्नचित्त आगे बढ़ें तो ज़रूर सफलता मिलेगी और यदि सफलता न भी मिली तो भी फैल होने की ग्लानि नहीं होगी और सफल होने का गर्व भी होगा
एक शेर कह कर मैं मेरा सन्देश और शुभकामना देता हूँ लाज़िम नहीं कि हर कोई हो कामयाब ही जीना भी सीखिए नाकामियों के साथ
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का ये जो मन की बात का कार्यक्रम है उसको मैं बहुत आवकार देता हूँ
सबके लिए मेरी बहुतबहुत शुभकामना
पूज्य मुरारी बापू का मैं भी आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा सन्देश हम सबको दिया
दोस्तो आज एक और बात बताना चाहता हूँ
मैं देख रहा हूँ कि इस बार जो मुझे लोगों ने जो अपने अनुभव बताये हैं उसमें योग की चर्चा अवश्य की है
और ये मेरे लिए खुशी की बात है कि इन दिनों मैं दुनिया में जिस किसी से मिलता हूँ थोड़ासा भी समय क्यों न मिले योग की थोड़ी सी बात तो कोई न कोई करता ही करता है
दुनिया के किसी भी देश का व्यक्ति क्यों न हो भारत का कोई व्यक्ति क्यों न हो तो मुझे अच्छा लगता है कि योग के संबंध में इतना आकर्षण पैदा हुआ है इतनी जिज्ञासा पैदा हुई है और देखिये कितने लोगों ने मुझे मेरे मोबाइल App पर श्री अतनु मंडल श्री कुणाल गुप्ता श्री सुशांत कुमार श्री के जी आनंद श्री अभिजीत कुलकर्णी न जाने अनगिनत लोगों ने मेडिटेशन की बात की है योग पर बल दिया है
खैर दोस्तो मैं बिलकुल ही आज ही कह दूँ कल सुबह से योग करना शुरू करो वो तो आपके साथ अन्याय होगा
लेकिन जो योग करते हैं वो कम से कम एक्साम है इसलिए आज न करें ऐसा न करें
करते हैं तो करिये
लेकिन ये बात सही है कि विद्यार्थी जीवन में हो या जीवन का उत्तरार्द्ध हो अंतर्मन की विकास यात्रा में योग एक बहुत बड़ी चाभी है
सरल से सरल चाभी है
आप ज़रूर उस पर ध्यान दीजिए
हाँ अगर आप अपने नजदीक में कोई योग के जानकार होंगे उनको पूछोगे तो एक्साम के दिनों में पहले योग नहीं किया होगा तो भी दोचार चीज़ें तो ऐसे बता देंगे जो आप दोचारपाँच मिनट में कर सकते हैं
देखिये अगर आप कर सकते हैं तो हाँ मेरा उसमें विश्वास बहुत है
मेरे नौजवान साथियो आपको परीक्षा हॉल में जाने की बड़ी जल्दी होती है
जल्दीजल्दी पर अपने बेंच पर बैठ जाने का मन करता है क्या ये चीज़ें हड़बड़ी में क्यों करें अपना पूरे दिन का समय का ऐसा प्रबंधन क्यों न करें कि कहीं ट्रैफिक में रुक जाएँ तो भी समय पर हम पहुँच ही जाएँ
वर्ना ऐसी चीज़ें एक नया तनाव पैदा करती हैं
और एक बात है हमें जितना समय मिला है उसमें जो प्रश्नपत्र है जो इंस्ट्रक्शंस हैं हमें कभीकभी लगता है कि ये हमारा समय खा जाएगा
ऐसा नहीं है दोस्तो
आप उन इंस्ट्रक्शंस को बारीकी से पढ़िए
दो मिनटतीन मिनटपाँच मिनट जाएगी कोई नुकसान नहीं होगा
लेकिन उससे एक्साम में क्या करना है उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी और बाद में पछतावा नहीं होगा और मैंने देखा है कि कभीकभार पेपर आने के बाद भी पैटर्न नयी आयी है ऐसा पता चलता है लेकिन पढ़ लेते हैं इंस्ट्रक्शंस तो शायद हम अपने आपको बराबर कोपअप कर लेते हैं कि हाँ ठीक है चलो मुझे ऐसे ही जाना है
और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि भले आपके पाँच मिनट इसमें जाएँ लेकिन इसको ज़रूर करें
श्रीमान यश नागर उन्होंने हमारे मोबाइल App पर लिखा है कि जब उन्होनें पहली बार पेपर पढ़ा तो उन्हें ये काफी कठिन लगा
लेकिन उसी पेपर को दोबारा आत्मविश्वास के साथ अब यही पेपर मेरे पास है कोई नये प्रश्न आने वाले नहीं हैं मुझे इतने ही प्रश्नों से निपटना है और जब दोबारा मैं सोचने लगा तो उन्होंने लिखा है कि मैं इतनी आसानी से इस पेपर को समझ गया पहली बार पढ़ा तो लगा कि ये तो मुझे नहीं आता है लेकिन वही चीज़ दोबारा पढ़ा तो मुझे ध्यान में आया कि नहींनहीं सवाल दूसरे तरीक़े से रखा गया है लेकिन ये तो वही बात है जो मैं जानता हूँ
प्रश्नों को समझना ये बहुत आवश्यक होता है
प्रश्नों को न समझने से कभीकभी प्रश्न कठिन लगता है
मैं यश नागर की इस बात पर बल देता हूँ कि आप प्रश्नों को दो बार पढ़ें तीन बार पढ़ें चार बार पढ़ें और आप जो जानते हैं उसके साथ उसको मैच करने का प्रयास करें
आप देखिये वो प्रश्न लिखने से पहले ही सरल हो जाएगा
मेरे लिए आज खुशी की बात है कि भारतरत्न और हमारे बहुत ही सम्मानित वैज्ञानिक सीएनआर राव उन्होंने धैर्य पर बल दिया है
बहुत ही कम शब्दों में लेकिन बहुत ही अच्छा सन्देश हम सभी विद्यार्थियों को उन्होंने दिया है
आइये राव साहब का मेसेज सुनें
थिस इस cnर
राओ फ्रॉम बैंगलूर
आई फुली रियलाइज थाट थे एक्जामिनेशंस काउज एंक्साइटी
थाट टू कॉम्पिटिटिव एक्जामिनेशंस डीओ नोट वॉरी डीओ यूर बेस्ट थाटs व्हाट आई टेल अल्ल माय यंग फ्रेंड्स
एटी थे सामे टाइम रिमेंबर थाट थेरे एआरई मैनी अपॉर्च्यूनिटीज इन थिस कंट्री
डिसाइड व्हाट यू वांट टो डीओ इन लाइफ एंड donट गिव इत यूपी
यू विल सक्सीड
डीओ नोट फोरगेट थाट यू एआरई आ चाइल्ड ओएफ थे यूनिवर्स
यू हेव आ राइट टो बीई हेरे लाइक थे ट्रीस एंड थे माउंटेन्स
अल्ल यू नीड इस डॉग्डनेस डेडिकेशन एंड टेनासिटी
विथ ठेसे क्वालिटीज यू विल सक्सीड इन अल्ल एक्जामिनेशंस एंड अल्ल ओथर एंडेवर्स
आई विश यू लक इन एवरीथिंग यू वांट टो डीओ गोड ब्लेस
देखा एक वैज्ञानिक का बात करने का तरीका कैसा होता है
जो बात कहने में मैं आधा घंटा लगाता हूँ वो बात वो तीन मिनट में कह देते हैं
यही तो विज्ञान की ताकत है और यही तो वैज्ञानिक मन की ताकत है
मैं राव साहब का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने देश के बच्चों को प्रेरित किया
उन्होंने जो बात कही है दृढ़ता की निष्ठा की तप की यही बात है डेडिकेशन डिटरमिनेशन डिलिजेंस
डटे रहो दोस्तो डटे रहो
अगर आप डटे रहोगे तो डर भी डरता रहेगा
और अच्छा करने के लिए सुनहरा भविष्य आपका इन्तजार कर रहा है
अब मेरे App पर एक सन्देश रुचिका डाबस ने अपने एक्साम एक्सपीरियंस को शेयर किया है
उन्होंने कहा कि उनके परिवार में एक्साम के समय एक पॉजिटिव एटमॉस्फियर बनाने का लगातार प्रयास होता है और ये चर्चा उनके साथी परिवारों में भी होती थी
सब मिला करके पॉजिटिव वातावरण
ये बात सही है जैसा सचिन जी ने भी कहा पॉजिटिव अप्रोच पॉजिटिव फ्रेम ओएफ माइंड पॉजिटिव एनर्जी को उजागर करता है
कभीकभी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो हमें प्रेरणा देती हैं और ये मत सोचिए कि ये सब विद्यार्थियों को ही प्रेरणा देती हैं
जीवन के किसी भी पड़ाव पर आप क्यों न हों उत्तम उदाहरण सत्य घटनाएँ बहुत बड़ी प्रेरणा भी देती हैं बहुत बड़ी ताकत भी देती हैं और संकट के समय नया रास्ता भी बना देती हैं
हम सब इलेक्ट्रिसिटी बल्ब के आविष्कारक थॉमस एलवा एडिसन हमारे सिलेबस में उसके विषय में पढ़ते हैं
लेकिन दोस्तो कभी ये सोचा है कितने सालों तक उन्होंने इस काम को करने के लिए खपा दिए
कितनी बार विफलताएँ मिली कितना समय गया कितने पैसे गए
विफलता मिलने पर कितनी निराशा आयी होगी
लेकिन आज उस इलेक्ट्रिसिटी वो बल्ब हम लोगों की ज़िंदगी को भी तो रोशन करता है
इसी को तो कहते हैं विफलता में भी सफलता की संभावनायें निहित होती हैं
श्रीनिवास रामानुजन को कौन नहीं जानता है
आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में से एक नाम इंडियन मैथमेटिशियन
आपको पता होगा उनका फॉर्मल कोई एड्यूकेशन मैथमेटिक्स में नहीं हुआ था कोई विशेष प्रशिक्षण भी नहीं हुआ था लेकिन उन्होंने मैथमेटिकल एनालिसिस नंबर थियोरी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में गहन योगदान किया
अत्यंत कष्ट भरा जीवन दुःख भरा जीवन उसके बावज़ूद भी वो दुनिया को बहुतकुछ दे करके गए
जे के रॉलिंग एक बेहतरीन उदाहरण हैं कि सफलता कभी भी किसी को भी मिल सकती है
हैरी पॉटर सीरीज आज दुनिया भर में लोकप्रिय है
लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था
कितनी समस्या उनको झेलनी पड़ी थी
कितनी विफलताएँ आई थीं
रॉलिंग ने खुद कहा था कि मुश्किलों में वो सारी ऊर्जा उस काम में लगाती थीं जो वाकई उनके लिए मायने रखता था
एक्साम आजकल सिर्फ़ विद्यार्थी की नहीं पूरे परिवार की और पूरे स्कूल की टीचर की सबकी हो जाती है
लेकिन पेरेंट्स और टीचर्स के सपोर्ट सिस्टम के बिना अकेला विद्यार्थी स्थिति अच्छी नहीं है
टीचर हो पेरेंट्स हों एवेन सीनियर स्टूडेंट्स हों ये सब मिला करके हम एक टीम बनके यूनिट बनके समान सोच के साथ योजनाबद्ध तरीक़े से आगे बढ़ें तो परीक्षा सरल हो जाती है
श्रीमान केशव वैष्णव ने मुझे App पर लिखा है उन्होंने शिकायत की है कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों पर अधिक मार्क्स मांगने के लिए कभी भी दबाव नहीं बनाना चाहिये
सिर्फ़ तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये
वो रिलैक्स रहे इसकी चिंता करनी चाहिये
विजय जिंदल लिखते हैं बच्चों पर उनसे अपनी उम्मीदों का बोझ न डालें
जितना हो सके उनका हौसला बढ़ायें
विश्वास बनाये रखने में सहायता करें
ये बात सही है
मैं आज पेरेंट्स को अधिक कहना नहीं चाहता हूँ
कृपा करके दबाव मत बनाइये
अगर वो अपने किसी दोस्त से बात कर रहा है तो रोकिये मत
एक हल्काफुल्का वातावरण बनाइए सकारात्मक वातावरण बनाइए
देखिये आपका बेटा हो या बेटी कितना कॉन्फिडेंस आ जायेगा
आपको भी वो कॉन्फिडेंस नज़र आयेगा
दोस्तो एक बात निश्चित है ख़ास करके मैं युवा मित्रों से कहना चाहता हूँ
हम लोगों का जीवन हमारी पुरानी पीढ़ियों से बहुत बदल चुका है
हर पल नया इनोवेशन नई टेक्नोलॉजी विज्ञान के नित नए रंगरूप देखने को मिल रहे हैं और हम सिर्फ अभिभूत हो रहे हैं ऐसा नहीं है
हम उससे जुड़ने का पसंद करते हैं
हम भी विज्ञान की रफ़्तार से आगे बढ़ना चाहते हैं
मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ दोस्तो कि आज नेशनल साइंस डे है
नेशनल साइंस डे देश का विज्ञान महोत्सव हर वर्ष 28 फरवरी हम इस रूप में मनाते हैं
28 फरवरी 1928 सर सीवी रमन ने अपनी खोज रमन इफ़ेक्ट की घोषणा की थी
यही तो खोज थी जिसमें उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और इसलिए देश 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाता है
जिज्ञासा विज्ञान की जननी है
हर मन में वैज्ञानिक सोच हो विज्ञान के प्रति आकर्षण हो और हर पीढ़ी को इनोवेशन पर बल देना होता है और विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बिना इनोवेशन संभव नहीं होते हैं
आज नेशनल साइंस डे पर देश में इनोवेशन पर बल मिले
ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी ये सारी बातें हमारी विकास यात्रा के सहज हिस्से बनने चाहिए और इस बार नेशनल साइंस डे का थीम है मेक इन इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवेन इनोवेशंस
सर सीवी रमन को मैं नमन करता हूँ और आप सबको विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए आग्रह कर रहा हूँ
दोस्तो कभीकभी सफलताएँ बहुत देर से मिलती हैं और सफलता जब मिलती है तब दुनिया को देखने का नज़रिया भी बदल जाता है
आप एक्साम में शायद बहुत बसी रहे होंगे तो शायद हो सकता है बहुत सी ख़बरे आपके मन में रजिस्टर न हुई हों
लेकिन मैं देशवासियो को भी इस बात को दोहराना चाहता हूँ
आपने पिछले दिनों में सुना होगा कि विज्ञान के विश्व में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण ख़ोज हुई है
विश्व के वैज्ञानिकों ने परिश्रम किया पीढ़ियाँ आती गईं कुछनकुछ करती गईं और क़रीबक़रीब 100 साल के बाद एक सफलता हाथ लगी
ग्रेविटेशनल वेव्स हमारे वैज्ञानिको के पुरुषार्थ से उसे उजागर किया गया डिटेक्ट किया गया
ये विज्ञान की बहुत दूरगामी सफलता है
ये खोज न केवल पिछली सदी के हमारे महान वैज्ञानिक आइन्स्टाइन की थियोरी को प्रमाणित करती है बल्कि फिजिक्स के लिए महान डिस्कवरी मानी जाती है
ये पूरी मानवजाति को पूरे विश्व के काम आने वाली बात है लेकिन एक भारतीय के नाते हम सब को इस बात की खुशी है कि सारी खोज की प्रक्रिया में हमारे देश के सपूत हमारे देश के होनहार वैज्ञानिक भी उससे जुड़े हुये थे
उनका भी योगदान है
मैं उन सभी वैज्ञानिकों को आज ह्रदय से बधाई देना चाहता हूँ अभिनन्दन करना चाहता हूँ
भविष्य में भी इस ख़ोज को आगे बढ़ाने में हमारे वैज्ञानिक प्रयासरत रहेंगे
अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों में भारत भी हिस्सेदार बनेगा और मेरे देशवासियो पिछले दिनों में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है
इसी खोज में और अधिक सफ़लता पाने के लिए लेसर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनलवेव अब्जर्वेटरी शॉर्ट में उसको कहते हैं लिगो भारत में खोलने का सरकार ने निर्णय लिया है
दुनिया में दो स्थान पर इस प्रकार की व्यवस्था है भारत तीसरा है
भारत के जुड़ने से इस प्रक्रिया को और नई ताक़त मिलेगी और नई गति मिलेगी
भारत ज़रूर अपने मर्यादित संसाधनों के बीच भी मानव कल्याण की इस महत्तम वैज्ञानिक ख़ोज की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनेगा
मैं फिर एक बार सभी वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ शुभकामनायें देता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो मैं एक नंबर लिखवाता हूँ आपको कल से आप मिस्ड कॉल करके इस नंबर से मेरी मन की बात सुन सकते हैं आपकी अपनी मातृभाषा में भी सुन सकते हैं
मिस्ड कॉल करने के लिए नंबर है 8190881908 मैं दोबारा कहता हूँ 8190881908
दोस्तो आपकी एक्साम शुरू हो रही है
मुझे भी कल एक्साम देनी है
सवासौ करोड़ देशवासी मेरी एक्जामिनेशन लेने वाले हैं
पता है न अरे भई कल बजट है 29 फरवरी ये लीप यियर होता है
लेकिन हाँ आपने देखा होगा मुझे सुनते ही लगा होगा मैं कितना स्वस्थ हूँ कितना आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ
बस कल मेरी एक्साम हो जाये परसों आपकी शुरू हो जाये
और हम सब सफल हों तो देश भी सफल होगा
तो दोस्तो आपको भी बहुतबहुत शुभकामनायें ढेर सारी शुभकामनायें
सफलताविफलता के तनाव से मुक्त हो करके मुक्त मन से आगे बढ़िये डटे रहिये